एक बड़ा सा खेत दिख रहा है इसमें कुछ छोटी-छोटी फसल लगी हुई दिख रही है।

फूल और गुलदस्तोंकी बाडीसी दुकान दिख रही है इसमे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल रखे हुए है रोड दिख रहा है रोड पे एक गाड़ी लगी हुई है।

पौधे लगे हुए है और बहुत सुंदर सुंदर फूल लग रहे है उस तरफ उस तरफ एक घर दिखाई दे रहा है बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है। --